यहाँ दो लोग खड़े हुए है और कुछ लोग अंदर भी है यहाँ सीढ़िया लगी हुई --

हल्की क्रीम कलर का है यहाँ पर एक दीवाल जैसे भी दिखाई दे रही है। जो की--

यहां पर लाइट की डोरिया और कुछ खंभे भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ कुछ बांस के डंडे भी लगे हुए है यहाँ एक बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पर कई सारे घर भी है यहाँ लाइट की खंभे है।

यहाँ पर नीचे कुछ फसल जैसी लगी हुई हैयहाँ आस-पास कई सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक दुकान है जिसमे बहुत सारी मछलियां रखी हुई हैं जो कि बिक रही हैं इसमें कई सारी रंग बिरंगी रखी हुई हैं इसमें कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं